पीछे में घर भी हैं।

अमें बहुत सारा फोटो है सोफा भी है।

आइसक्रीम भी अलग अलग क़िसम के दिखाई दे रहा है।

नीचे में कुछ बिछा के है टाइल्स में लाइट जलने वाला परछाई भी दिखाई दे रहा है।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा है लाइट जल के भी दिखाई दे रहा है।

ये स्कूल का सामने है।

गाड़ी का दरवाजा और बोनट भी खुल गई है।

नीचे में परछाई भी दिखाई दे रहा है।

यह हमे पोस्टर दिखाई दे रहा है उसमें इंसान का फोटो लग के हैं इंसान सफेद रंग का कपरा पहन के है।

ये एक फार्मेसी है यहाँ में कुर्सी देखने को भी मिल रहा है।

राशन बॉक्स देखने को मिल रहा है।

पर वे सफेद रंग का लाइन लगा के है।

एक ठो पोस खड़ा कर के भी हैं।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

दरबाजा भी दिखाई दे रहा है उसमें खिलकी भी दिखाई दे रहा है लाइट जल के भी दिखाई दे रहा है।

साइड में घास का पट्टा भी दिखाई दे रहा है।

आगे में भी घास देखने को मिल रहा है।

इसमें बहुत सारा पेड़ भी है।

हमें बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

पानी देखने को भी मिल रहा है।

लाइट पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।

आसमान में बादल देखने को मिल रहा है।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

पानी के अंदर में लकरी जैसा कुछ है।

यहाँ में बहुत सारा लोग भी है।

टेबल भी दिखाई दे रहा है टेबल का ऊपर में पानी बोटल भी दिखाई दे रहा है।

होटल भी दिखाई दे रहा है।

घर का साइड में एक बड़ा सा पेर है।

दो बिल्डिंग भी है।

आखिर में कंचा अंकल है।